यहाँ पे बड़ा-बड़ा घर है ऑटो है गाड़ी है बस है पेड़ है पौधा हैं ।

यह एक गठ्टर है एक पेड़ है।

बहुत सारा पेड़ पौधा हैं रस्ते में खड़े हैं।

ये एक मंदिर है बहुत सी बल्ब बत्तियाँ जला हुआ है बहुत सी आदमियाँ हैं हम्म देखने में बहुत सुंदर है अच्छा है।

ये सारा लोग है।

ये एक घर है बहुत सारा समान है देखने में बहुत सुंदर है कैमरा है।

यहां पे एक मंदिर है बहुत सारा बल्ब दिया जला हुआ है एक पेड़ है।